ऊपर चद्दर का शेड है जहां पर बहुत सारे कपड़े सूखते नजर आ रहे हैं और ग्राउंड में बहुत सारी गाड़ियां नजर आ रही है बहुत से लोग उसपे बैठे नजर आ रहे हैं हमें कुछ खड़े नजर आ रहे हैं।

अम यहाँ पे हमें एक मैदान शो हो रहा है जहाँ पे ग्रीन कलर का कार्पेट हमें यहाँ शो हो रहा है पोस्टर लगा है जिसपे ताजमहल बना हुआ है और ऑटो रिक्शा यहाँ पे खड़ी है बैटरी रिक्शा यहाँ पे खड़ी है जो फाइनेंस करवाने के लिए बैठे है यहाँ पे।

यहां पर हमें ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है कुछ बड़े भी रिक्शा दिखाई दे रही हैं लगभग सामान हमें दिखाई दे रहा है बहुत से लोग हमे दिखाई दे रहे हैं कोई झाड़ू लगाता हुआ नजर आ रहा है ट्रैक्टर्स हमें यहां दिख रहे हैं।

--बहुत से लोग अंदर-बहार नजर आ रहे है हमें बुक्स नजर आ रही हैं हमें--

फुल-हार हमें यहाँ नजर आ रहा है उनके उनके लगे हुए फूल-हार दिखा रहे है दिए दिखा रहे पूजा के सामग्री हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं।

अम यहाँ पे हमें मेले का गेट नजर मंदिर का गेट नजर रहा है जहाँ पे कुछ ऊपर दो शेर जैसे बने हुए हैं वो नजर आ रहे है पिंक कलर गेट नजर आ रहा है लाइटिंग्स लगी है लैम्प्स लगे हैं।

यहाँ पे हमें वेजिटेबल शॉप नज़र आ रही है| यहाँ पे बनाना दिख रहा है ओनियन दिख रही हैं गोभी ऑरेंज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ।

यहाँं पे हमें कोलेज की बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं जहां पे हमे रेलिंग्स दिखाई दे रही हैं गार्डन हमें यहाँं पे दिखाई दे रहा हैं ट्रीज हमें यहाँं पे शो हो रहे हैं और कुछ छोटे-छोटे पौधे हमें यहाँं पे दिखाई दे रहा हैं।